घर के आगे बहुत सारे गमलों में सो प्लांट लगा हुआ है और फूल पत्तियां भी लगी हुई है।

दुकान के बिल्डिंग का कलर ग्रीन है।

इसकी दीवार पर एक घड़ी भी लटकी हुई है।

बीच बीच में फूटा हुआ है।

एक स्कूल के बिल्डिंग दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर व्हाइट और ब्लू हैं।

कुछ बॉटल्स और डिब्बे रखे गए हैं।

एक कमरे का दृश्य है कमरे की दीवार पर व्हाइट पुट्टी किया गया है।

इसमें सुधा लिखा हुआ है साइकल के पीछे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी दुकानें भी है।

यह एक मंदिर का दृश्य है मंदिर के चारों तरफ टाइल्स लगे हुए हैं मंदिर की दीवार पर स्वास्तिका भी बने हुए हैं।

एक मकान का दृश्य है मकान का कलर आसमानी।

सीलिंग में बलूंस भी लटके हुए हैं और फैन भी लगा हुआ है और लाइटे भी लगी हुई है।

यह एक बहोत ही बड़ा बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर व्हाइट है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर क्रीम --

नीचे में एक बाल्टी में कुछ पौधे लगे हुए हैं।

यह एक रोड का दृश्य है रोड पर एक बड़ी बस भी लगी हुई है बस का कलर पीला और आसमानी है।

उसके ऊपर में भी रंग बिरंगे के कपड़े लगे हुए हैं।

अपना सारा हाथ ऊपर रखे हैं।

यह एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग के नीचे बहुत सारी दुकानें भी है।

शिप में एक झंडा लटका हुआ हैं।

नदी के किनारे से एक रस्सी बंधा हुआ है।

दुकान के बाहर दो साइकल भी लगे हुए हैं।

इसके दीवार पर रेड और वाइट में बहुत सारे बलूंस सजे हुए हैं।

कुर्सियों में वाइट कलर के कपड़े लगे हुए हैं।

टेबल पर एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

इस कमरे में एक जनरेटर भी रखा हुआ है जनरेटर का कलर ग्रीन है।